आस-पास गंदगी है तीन चार ढकेले आस-पास डरी हुई है शामे एक पोल है आस-पास पेड़ है पेड़-पौधे है।